और काउंटर भी कितना सुंदर है और नीचे प्लाई का बोर्ड लगा है बहुत सु--

और एक पत्थर भी दिख रहा है और आदमी है जो--

एक लाल टी सोट पीने हे एक हरा टी सोट पिन्हे है और द्वेग अंकल लोग खड़े है लोग मछली लेने --

फरे फूले लग रहे हैं और घास भी इसमें दिख रहा है जो बड़े हरे लग रहा है।

ये एक घर का फोटो है और घर बहुत ही सुंदर से कलर किया गया है जैसे कि आसमानी--

सामने लिखा है कांटेक्ट नंबर और दो आदमी खड़े हैं लोग जैसे की एक औरत है और एक आदमी एक आदमी है जो पूरा कवर है।

और आगे इसके पहाड़ भी दिख रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है और पानी के अंदर कुछ चिरई दिख रहा--

आदमी है और दो साइकल भी लगा है बाहर सीढ़ी हैं सीढ़ी के बगल में--

पौधा दिख रहा है और बिल्डिंग जो है कॉफी कलर में--